नदी है यह नदी बहुत ही बड़ी है यह नदी में बहोत ही पानी है यह पानी बहोत ही गहरी है।